यह एक चित्र है जिसमें हमें कुछ गेट्स दिखाई दे रहे है।

और रिक्शा के अंदर हमें एक आदमी भी दिखाई दे रहा है।

यह एक चित्र है जिसमें हमें बहुत सारे आदमी बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं।

और एक मोटरसाइकिल पर आदमी भी बैठा हुआ है।

उसी के ऊपर हमें एक मीटर भी दिखाई दे रहा है।

और एक सामने आदमी भी खड़ा हुआ है।

हमें सामने की ओर एक घड़ी भी दिखाई दे रही है जो दिवाल पर--

यह एक चित्र है जिसमें हमें एक आदमी और एक बच्चा और आदमी के पीछे एक एक्टिवा भी दिखाई दे रही है।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

यहां पर एक मेज के ऊपर रेड कलर का कुछ रखा हुआ है।

सामने एक आदमी फोन पर बात करता हुआ दिखाई दे रहा है।

कुर्सी का कलर रेड और व्हाइट है।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

और एक आदमी साइकिल पर भी बैठा हुआ है।

यह एक चित्र है जिसमे हमें शीशा लगा दिखाई दे रहा है।

और पानी के अंदर पड़े कुछ पत्थर भी दिखाई दे रहे हैं।